दंडवत प्रणाम कर रहे हैं बहोत बिच्छू ने--

हमने एक दूल्हे गाड़ी दिख रहा है।

और लाइट येलो कलर से पेंट किया गया है। वहां पर एक टेबल लगी हुई है और दो कुर्सियां है।

आठ महिलाएं दो पुरुष और एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है।

नीचे दरिया बिछी हुई हैं एक लैपटॉप हैं और चार पांच--

कंस्ट्रक्शन के कार्य में छत को ढाला जा रहा है।